इधर बड़े ग्राउंड है पीला के चेयर्स है दो ब दो बच्चे --

फ्रेम है ब्लू कलर टेबल है है शेलटर है आदमी है लड़का है लड़की है।

कैमरा है लाइट्स है टेबल फैन है टेबल्स है चेयर्स है एक आदमी देखता है।

है बिल्डिंग है अपार्टमेंट है ट्रैक है रेल जाता है।

पानी के पाइप में फ्लावर्स है।

पुलिसमैन है ऑटो जाता है कार है उसके ऊपर आदमी है।

इधर बड़े बोर्ड है प्रेसर सो गॉड इंग्लिश लैटर है नेताजी जूनियर कलाशाला तेलुगु लेटर्स हैं।

इधर बेकरी है बेकरी में क्या विच है वो वो आदमी देखता है।

सादा के मैदान है एक आदमी जाता है लड़की आता है एक लड़की है एक लड़का है ग्राउंड है छोटा छोटा पेट्स है।

इधर छोटा रूम है बड़े टेबुल है टेबल के साइड ब्लैक कलर है टेबल फैन है।

इधर बड़े टेबल है टेबल के ऊपर बड़े बेड शीट डालता है पिंक कलर व्हाट इस अ रेड कलर व्हाट इस अ वाइट कलर --